इस पिक्चर में घोड़ा खड़ा है जिसमें महान व्यक्ति बैठा है।

ये एक गेट के बाहर का फोटो है तीन लोग खड़े हुए हैं।

शादी का रिसेप्शन का फोटो है।